यहां एक बहुत बड़ी इमारत है जीस्की दिवारोंका रंग सेप्ड है और वही बदसा को लगहुआ है ज़ीस्का रंग काला है

एक बड़ा - सा बोर्ड है जिसका रंग सफेद और लाल है जिस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं वही बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।